ए_टी_एम मशीन प के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

हर प्लेट में एक एक चम्मच रखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर फ्रोजन कोन आइसक्रीम कैफे लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर कई सारी टेबल और चेयर हैं।

रोड के बीच में फूलों का पेड़ लगा हुआ है।

स्टेज पर कई सारे लड़के लेटे हुए परफॉर्मेंस कर रहे हैं।

घर का कलर ब्राउन है कुछ का कलर व्हाइट है।